हम देख पा रहे है की यह एक प्रर्दशनी का दिश दृश्य है इसमें तरह-तरह के लकड़िये लकड़ियों के सामान मिल रहे --

यहाँ छोटी बड़ी सभी तरह की मछलियाँ हैं।

यहाँ एक नीले कलर का शर्ट पेहेने लड़का खड़ा है उसे प्यास लगी है तो वह बोटल से पानी पी रहा है।

एक चट्टान के अंदर का दृश्य है।

जहाँ एक आदमी नीले शर्ट पहने बैठा हुआ है।

यहाँ एक सफ़ेद रंग का शर्ट पेहने लड़का खड़ा है वह तस्वीरे खिंचवा रहा है।

यह एक बैंक का दृश्य है उस बैंक का नाम केनरा बैंक है यहाँ दो लोग कतार मे खड़े है।

यहां एक झंडा लहरा रहा है और बहुत सारी रिक्शा खड़ी है।

यह एक कारखाने का दृश्य है यहां बहोत सारे--

यह एक महाविद्यालय के बाहर का दृश्य है।

इसमें बहुत सारे कार्यकरता दिखाई दे रहे हैं जिसमे से एक कार्यकरता आग जला रहे --